यहाँ पे एक बुड्ढा खड़ा हुआ है जो की ऑटो पकड़ के और उसके पीछे घर बना हुआ है और वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है पीले कलर बुड्ढा जो की ऑटो पकड़ के जो रखा है उसका रंग लाल है पीला है और उसमें तीन टायर लगे हुए है।

उनके कपड़ो का कलर है काला सफेद लाल और सामने शीशा लगा हुआ है उसका कलर सफेद है।

और बाहर गाड़ी खड़ी हुई है उसमें दो टायर लगे हैं जिसका रंग काला है और ऊपर शेड लगी हुई है उसका रंग काला है। बाहर आदमी बैठे हुए हैं दो ओ ओ बुढ़ी औरतें उनके कपड़े--

और-लो-जो-यहाँ पे लड़का आ रहा है बैग टाँग के जिसके कपड़े का कलर नीला और काला है एक बूढ़ी औरत जा रही है औ-ऑफिस की तरफ और साइकिलें खड़ी हुईं हैं जिसका रंग काला है।

और ये बहोत बड़ा हाल बना हुआ हैजो किसी कार्यक्रम के लिए सज रहा हैऔर एक ये लड़का बैठा हुआ है चूतिया सा--

यहाँ पे एक अ वो कार्यक्रम हो रहा है और ट्रॉफी रखी गई है जिसका कलर पीला है और लाल है।

ट्रॉफी के ऊपर मेडल रखे गये है और उसमें बँधा हुआ एक फीता है उसका कलर लाल है और गुब्बारे यहाँ पे सामने लगे हुए है जिनका कलर पीला है काला है और सामने वो--

यहाँ पे एक डाक है जिसके पोस्टर लगा हुआ है गेट के पास पोस्टर का कलर कत्था है सफेद है और ये सामने एक आदमी झाड़ू लगा रहा है।

और एक लड़का खड़ा हुआ है उसके कपड़े का रंग लाल है और पैंट का रंग सफेद है बहोत सारे लोग और सामने ईटा है उसका रंग पीला है और ईटे के पास बहोत सारे लोग खड़े हुए है।

हुए जिनके कपड़ों का रंग पीला है लेडीसों के कपड़ों का रंग लाल है और घर जो कि बना हुआ है वहाँ का रंग गुल। ]

यहाँ पे जिम सेंटर खुला हुआ है और जिम की काफी सारी मशीनें हैं जिम का कलर काला है एक आदमी जो कि एक्सरर्साइज़ कर रहा है उसके कपड़ों का रंग काला है और जूता पहन के रखा है जूते का रंग काला है हरे कलर का खड़ा हुआ है।

हैऔर उसके टी शर्ट का रंग भी सफेद है और यहाँ पे।